साथ ही वह खुश दिख रहे हैं किसी ने चश्मा लगाया है।

एक व्यक्ति सफेद टी-शर्ट में हमें दुकान के बाहर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है।

हमे एक मैदान नजर आ रहा है। मैदान पर हमे एक मंच दिखाई दे रहा है।